इसके बाहर हरे रंग के पेड़ पौधे वृक्ष लगे हुए हैं।

इस फोटो में नीले रंग का स्विमिंग पूल दिखाया गया है।